यहां पर एक पोस्टर है जो सैमसंग गैलेक्सी लिखा हुआ--

यह एक हॉल का दृश्य है जो देखने में बहुत खूबसूरत है और एक वाइट कलर का गदा है।

यह एक रूम है रूम का एक दृश्य है जो कि उसमें टेबल बहुत सारा लगाया हुआ है।

कोई बैठे हुए है कोई खड़ा है चप्पल एक फिरा खोले है।

यहाँ पे एक महजीद है।

एक लाईट उधर भी है ऊपर लगाया हुआ दो इधर लाईट लगाया हुआ है।

आगे बहुत सा पेड़ पौधा भी है।

यह एक कपड़ा का दुकान है जो देखने में बहुत खूबसूरत दिख रहा है और बाहर में एक वाइट कलर का बोर्ड भी है।

अंदर एक खिड़की है दिवाल भी पेंटिंग है और बहुत सारा कुरकुरा सैम्पुल चॉकलेट इस सब रखा हुआ है।

बगल में आम का पेड़ भी है बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं और आसमान में बादल व्हाइट कलर का दिख रहा है।

और बहुत सारा वृक्ष भी

पत्ता झरा नीचे है रोड पे।

जाली लगाया हुआ है कपड़ा का और बहुत सारा पेड़ पौधे भी आसमान में बादल व्हाइट कलर का दिख रहा है।

यह एक तलाब है तलाब में पानी है।